इसके अंदर चार पिकपे लगाई गई है।

बहुत सारी कुर्सी एवं टेबुल लगाए गए हैं।

कुछ पंखे भी लगाए गए हैं।

यह एक कोरियर नेसेस ऑफिस है।

बाहर में बहोत सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं एक कंप्यूटर भी है।

एक बड़ा सा मैदान है।

कुछ जानवर घास खा रहे हैं।

जिसमें कुछ लोग खड़े है।

बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं।

में अगरबत्ती भी लगाया गया है।

ये एक बड़ा सा संग्रहालय है।

आच कोलगुडी अलीपुर द्वार में एक अस्पताल है।

नेहा किचन स्टोर नामक एक दुकान है।

यह दुकान अलीपुरद्वार के भागपुर में अवस्थित है।

ये मछली मंडी है यहां पे बहुत सारे स्त्री एवं पुरुष आए हुए हैं।

इसमें बाथरूम से संबंधित वस्तुएं भी उपलब्ध है।

एक टेबल पे बहोत सारी दवाई रखी हुई है।

कुछ लोगों की हाथ में ऑरेंज कलर का लोटा है प्लास्टिक का।

इसमें बांस भी लगाया गया है नदी के अंदर जिसमें कुछ कच कचरा फसा है।

गुफा के बाहर बहुत सारे पत्ते पड़े हैं।

एक लैपटॉप रखा गया है।

एक बड़ा सा कमरा है।

इसमें बहुत सारे बैलून भी लगे हैं।

इसमें कुछ पंखे भी हैं।

ये एक पर्दे की दुकान है इसमें रंग बिरंगे पर्दे मिलते हैं।

टेबल पे कुछ बोतल रखे गए हैं।

दीवार का रंग पीला है गेट का रंग हरा है बगल में मोटा सा पेड़ है।